और यहां पर एक लाइट जगाई गई--

यहां पर सामने एक बैंक है और बैंक के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है और--

यहां पर एक मछली मंडी है।

और यहां पर एक खुला मैदान है मैदान में बहुत सारे बच्चे --

और यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक टी_वी लगाया गया है और यहां पर एक फ्रिज रखी गई है।

और सामने कुछ सीढ़ियां है और यहां पर कुछ सामान--

सामने कुछ सीढ़ियां है और यहां पर--

रखा गया है और यहां पर कांच के दरवाजे लगाए गए हैं।

यहां पर कुछ बहुत तरह के नमकीन रखी गई है और कुछ मिठाइयां--

और आस पास कुछ गाड़ियां खड़ी है और यहां पर कुछ झंडे लगाए गए हैं।